और डांस क्लास में बहुत सारे बच्चे जाते हैं डांस करने के लिए डांस बहुत ही बच्चे लोग को पसंद है डांस --

तरह-तरह की डिज़ाइन से बाल को काटे जाते हैं।